यह पुराने जमाने का कोई इमारत बना हुआ है इसमें बहौत सारे गुंबद भी हैं ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग कुछ आसमानी --

इसमें कुछ फोटो बना हुआ है। सामने टी.वी. भी रखा हुआ है।